इसे इंग्लिश में कमिश्नर ऑफ़ इनकम टैक्स भी कहा जाता है यह जगह बहुत ही फेमस जगहो में से एक है।

गार्डन में बहुत से लोग टहलने भी आया करते है यह गार्डन बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस गार्डन है।

इस स्टेडियम में बहुत ज्यादा भीड़ रहा करती है यहां पर बहुत से लोग जाया करते है यहां पे बहुत सारे मैचेज होती है यहां पे बहुत सारे टूर्नामेंटस भी होते है।